नदी है जिसमें पानी बह रहा है और चट्टाने ही चट्टान है और घास जमी हुई है कुछ पहाड़ है | जिसमे पेड़ पौधा हे |

है एक ब नदी है जिसमे से एक पहाड़ से पानी नीचे की ओर आ रहा है।

पहाड़ है जो पत्थर है पत्थरो का बना हुआ है जो नीचे बेहेरा है और अगल बगल हरे पेड़ पौधे भी है।

और कुछ लड़के और लड़कियां खड़ी है एक ठेला लगी है।